कुरंदी का पोस्ट ऑफिस --

ये कहीं का बोर्ड है अअअ मेरे ख्याल से बस स्टेशन का चौराहा है शायद मेरे ख्याल से बचेली या फिर किरंदुल का हो सकता है जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ हैं।